और आगे शायद टोल टैक्स है ये।

और इस पर मिट्टी येलो या फिर चिनाई से मूर्ति बनाई गई है।

और इसमें काफी अच्छी-अच्छी स्लाइड लगी हुई है यार इतनी ऊंची स्लाइड है।

चिप्स ले लो कुरकुर ले लो शैंपू ले लो साबुन ले लो टॉफी ले लो।

दोनों गाड़ी अच्छी लग रही थी यार रोड पर के साइड में एक शायद कार की शोरूम था अच्छा था बहुत।

और ये पटरियों पर खड़ी है यार मुझे तो यार ट्रेन का सफर करो भी काफी टाइम हो गया यार कहीं गया भी नहीं है अभी तक मैं ट्रेन से।

यह एक स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल में ये म्मम्म गोल-गोल निकलने की मतलब इनसे भागो निकल के पानी में डुबकी मारो वो लगा रखा है और ये बच्चो के बत्तख जैसी नाव है।

काफी लोग भी हैं मंदिर के पास सब लोग पूजा करते हैं और शाम के टाइम मंदिर में गाने भी बजते हैं।

ये तो साड़ी वाले की दुकान है यार कितनी अच्छी-अच्छी साड़ी दिखा रिहा है यार नीली है गुलाबी है हरी है लाल है।

तेल ले लो क्रीम ले लो साबुन ले लो सर्फ ले लो दाल ले लो सभी सामान मिलता है किराने की दुकान है काफी अच्छी दुकान है बड़ी दुकान है जब भी सारा सामान मिलता है।

इसमें काम चल रहा है अभी तो ये काफी बड़ा मकान है यार इसमें पिलर खड़े हैं अभी बन रहा है ये बनने के बाद कितना अच्छा रहेगा ये मकान यार।